तीन आदमी खडया हैं बे माल मिला रहिया हैं कुंडों है कने।

कंटीली झाड़िया है और पीछे डोली पर की लिख्योड़ो है और पीछ और पुरानी सी जगह है।

दो ट्यूबलाइटा है एक ए सी लाग रखी है और पीछे बारी है बड़ी सार की।

एक दुकान है दुकान के मायने कुरकुरा टांग्योड़ो है पुड़िया और आगे एक इलेक्ट्रॉनिक काँटों पड़यो है और आ मायने --

अब साइड के मायने एक मकान है और एक बोर्ड लाग्योड़ो है।

दो छोरा बैठ्या है शामे एक गमलो पड़यो है एक स्पीकर है और पेड़िया है।

एक पेड़ है गाड़िया खड़ी है आदमी है दस बारह।

और पीछे दो बोर्ड लाग्योड़ा है और साइड में टेन्ट तान्योडो है।

नीला रंग कि बेडसीट है औरदो बोर्ड लाग्योड़ा है जीका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है।

एक जग है जग के कने एक गिलास है गिलास के सामे थाली पड़ी है थाली के मायने गालेडो पड़यो है की बीके कने एक तबेलों तबेलों भी भरयोडो है।

और बीके मायने चमची है चमची के मायने चटनी रखियोड़ी है सामे और बिहू आगे दही है।

पेन पेंसिल रबड़ संचो की दुकान है जकी दुकान के मायने सामान पड़यो है और कॉपी किताबा और गूंद --

एक दुकान है दुकान के मायने पास क मायने साबुन तेल कोलगेट नमक मिर्च हल्दी --

सगला पड़या है और लटटू जग रहियो है लाइट है।

एक काँटों पड़ियाे है कांटा के नीचे मिठाई है जकि और साइड में फ्रीज़ है।